लगी हुई है जो की पीले कलर और हरे कलर की है उसके बाद ये क्वार्टर बने हुए हैं उसके पीछे पेड़ लगे हुए हैं आम के।

मुझे एक गुरु नानक ड्रग हाउस दिखाई दे रहा है।

मुझे संतरे की पैकेट दिखाई दे रही है।

मुझे कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है।

मुझे कैश लिखा दिखाई दे रहा है मुझे--

कुर्सियां भी दिखाई दे रही है मुझे ब्लैक बोर्ड भी दिखाई नहीं रहा है।

मुझे एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है मुझे रेल की पटरी भी दिखाई दे रही है।

मुझे अहह गेट दिखाई दे रहा है।